आ दोनों लोक खडी है। एक लड़का मछली किनरा है। दो चाडी पास में छोटो छोटो गाछ पाला है। ।

यहा पर बेठेने के लिए कुछ व्यू है चेर व्यू है और यहाँ पर रेड कलर का फुल व्यू है यहा पर पेड़ भी है।

यहा पर एक पेंडल है जो पेंडल का कलर पिंक वाईट यहाँ पर --

एक बिल्डिंग है वाइट कलर का और बोहुत लड़का भी ऊ है चेयर में बैठी है।